इसमें दिखाया जा रहा है और ये एक वॉटर पार्क है और देखने में बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे देखने में दो बत्तके भी बैठी हुई हैं।

बच्चे भी मैच खेल रहे और ये देखने में बोहोत --

चित्र में दिखाया जा रहा है और ये एक प्लेट है और प्लेट में दही वड़े भी रखे हुए हैं जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रहे हैं और ये दही वड़े --